आप में से बहुत से लोग अपने गाँव के इस दृश्य से परिचित होंगे बच्चों का एक समूह एक खुले क्षेत्र में खेल रहा है
इस लड़के को देखें जो उस बॉल का पीछा कर रहा है
वो पास के झाड़ीदार क्षेत्र में प्रवेश करता है
वह एक साँप देखता है
देखते ही देखते साँप अपने बिल के बाहर आ जाता है
डरा हुआ लड़का पत्थर फेंक कर साँप को भगाने की कोशिश करता है
साँप दूर नहीं जाता है
बल्कि वो लड़के की तरफ आता है और उसके पैर में काट लेता है
लड़का मदद के लिए चीखता है
उसके दोस्त मदद के लिए उसकी तरफ भागते हैं
वो उसके पैर पर दो लाल धब्बे देखते हैं
वे लड़के को झाड़ियों से बहार ले आते हैं
वहाँ हंगामा मच जाता है
सारे बच्चे प्राथमिक उपचार के बारे में भिन्न भिन्न सलाह देते हैं
यहाँ साँप के काटने की स्थिति में प्राथमिक उपचार जानने का महत्व पता चलता है
फर्स्ट एड ओन स्नेक बाइट्स के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे प्राथमिक उपचार कितना ज़रूरी है
और साँप के काटने पर सही प्राथमिक उपचार कैसे देते हैं
प्राथमिक उपचार के निर्देशों पर जाने से पहले हम समीक्षा करेंगे कि लड़को के समूह ने अपने दोस्त को बचाने के लिए क्या किया
उन्होंने लड़के को लेटा दिया
और फिर उन्होंने उसे अस्पताल ले जाने के लिए बड़ों की मदद मांगी
फिर उन्होंने घाव के ऊपर कपडा बाँधा
क्या यह सही प्राथमिक उपचार था160
हाँ160
एक तरह से यह ठीक है
इस स्थिति में अस्पताल ज़्यादा दूर नहीं था
अतः लड़के को चिकित्सा समय पर मिल गयी
साँप के काटने की स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा का सही तरीका निम्न प्रकार है व्यक्ति को समतल सतह पर लेटा दें
प्रभावित क्षेत्र पर कपडा लपेटें प्राथमिक उपचार का प्रथम उद्देश्य विष को पूरे शरीर में फैलने से रोकना है
और घाव के चारों तरफ हमें कपडा कैसे लपेटना चाहिए160
टाँग के ऊपरी भाग से कपडा लपेटना शुरू करें और नीचे तक जाएँ
आगे के उपचार के लिए व्यक्ति को पास के अस्पताल में जल्द से जल्द ले जाएँ
इस प्रकार समय पर दिया गया प्राथमिक उपचार बहुत से नुकसानों को रोकता है
याद रखें गलत प्राथमिक उपचार किसी की स्थिति ख़राब कर सकता है
साँप के काटने पर करने योग्य बातें
सबसे पहले पीड़ित को नीचे लेटा दें
कपडा लपेटते समय कुछ दबाव लगाएं
और साँप के काटने पर न करने योग्य बातें
कटे हुए के चारों तरफ की स्किन या माँस न काटें
कटे हुए पर या उसके चारों तरफ बर्फ न रखें
व्यक्ति को बिजली का झटका न दें
कटे हुए स्थान से खून या विष को चूसकर बाहर निकालने की कोशिश न करें
कपडे को बहुत टाइट न बाँधें
यह गैंग्रीन कर सकता है
यह विडिओ स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट के ब्रिज थे डिजिटल डिवाइड इनिशिएटिव का हिस्सा है
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट के बारे में अधिक जानने के लिए httpspoken tutorialorgWhat is a Spoken Tutorial पर उपलब्ध वीडियो देखें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
इस मिशन पर अधिक जानकारी httpspoken tutorialorgNMEICT Intro पर उपलब्ध है